यह व्हाइट कलर की है इसे फूलों से डेकोरेट किया हुआ है और इसके दरवाजे खुले हैं।

यहां पर टेबल और चेयर लगे हुए हैं।

जिसके अंदर सब्जियां लगा रखी है।

यह एक साइकिल की शॉप है जिसके बोर्ड पर--

हर्ट शेप में पिल्लों रखा हुआ है दीवार पर कुछ टंगा हुआ है और एक घड़ी दिखाई दे रही है।

पेट के लिए पैकेट्स के अंदर फूड रखा हुआ है।